रेस्टोरेंट सजा हुआ है एक पार्क के चारों तरफ ग्रीनरी लगी हुई है।

पार्क है इसमें एक ट्रेन चल रही है ट्रेन के टायर है और--

दो पहाड़ है उसके बीच में एक रस्ता जा रहा है जिस पे एक ट्रक खड़ा है टाटा का कॉमर्शियल लि --

एक ऑफिस है जिसमें कंप्यूटर लगा हुआ है और दो --

पीछे चर्च का सिंबल बन रहा है ऊपर दो पंखे चल रहे हैं एक रुका हुआ है।

शोरूम का अंदर एक आंटी जा रही है और पीछे इसका शोरूम --

और सामने कुछ डिब्बे रखे हैं सामने एक होल है जो टीन शेड से बना हुआ है।

और ये बस स्टैंड ऊपर से कवर्ड है जिससे--

और यहां पर बहुत सारी बाइक्स खड़ी है और स्कूटी खड़ी है।

कमरा है जिसके साइड में ईंट पड़ी हुई है और पीछे एक बिल्डिंग है बहुत पुरानी उसके साइड में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं पूरा एक मैदान है।

उसके साइड में वाटर का सिस्टम लगाया गया है और पीछे हरे-हरे पेड़ हैं ये--

पेट्रोल पंप का ऑफिस है जिस पे जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है पेट्रोल पंप का--

पेड़-पौधे अलग-अलग वैरायटी के हैं और सामने बहुत बड़े पहाड़ हैं।

फूल का पेड़ है जहां पर लाल कलर के फूल लग रहे हैं।

यहां पर मेज है उसके ऊपर कीबोर्ड रखा है फोन रखा है और घंटी रखी है।

जो आदमी एकवर्क कर रहा है उसके सामने एक खालीडब्बा है जिसमें लाइट चल रही है।

और जो सबसे ग्राउंड एरिया है वहां पर भी दुकानें हैं और--

बहुत सारी दुकान है त्रिमंजिल की ये बिल्डिंग है जहां पर एक ग्राउंड एरिया में दुकान --

उसके साइड में भी बहुत सारी दुकान है एक शोरूम है।

वो अ टास्क का और उसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक है लेमन वेमन की--

और शीशे के सामने उसके पीछे एक लाइट जल रही है एक पर्दा ओ लग रहा है।

तीनों अलग-अलग पेड़ है और यहां पर एक पाइप जा रहा है उसके साइड में टीन दिख रही है।

एक सोनू भंगार की दुकान है उसके साइड में वो बावली--

बिल्डिंगों के गेट ब्लॅक कलर की है उसके साइड में एक कंडक्टर हाउस लग रहा है जो ब्लॅक कलर का है उसके नीचे --

डबल डंबल मारते दिखा रहा है उस नीचे का फ्लोर रेड एंड ब्लैक कलर का उसके साइड में--

जिम की एक मशीन है उसके साइड में गुब्बारा है।

एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें की सफाई चल रही है एक अंकल उसका टायर साफ कर रहा --

और गाड़ी ए_पी की है होंडा सिटी --

पूरी बाउंड्री हुई पड़ी है ब्लू कलर से--

एक खाली मैदान है जिस कच्चा मैदान है जिसमें बहोत सारी गंदगी हुई हुई है और बहोत सारी घास है यहाँ पर और --